सामने कुछ लोग खड़े हुए है देखने में जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है जस्ट लाइक अ सीन --

सामने हमे कपड़ो की दुकान दिखाई दे रही है | जहाँ पर एक बोर्ड में मम्मी डैडी लिखा हुआ है | सामने के एक बोर्ड मे कुछ तमिल में लिखा हुआ है |

हमें एक अ रोड दिखाई दे रही है साइड में एक दीवार है जिस पर तारे खींची हुई हैं ऊपर में और नीचे दीवार पर साइड में कुछ लिखा हुआ है ।

मैदान में पीछे के बैकग्राउंड काफी यदि अच्छे और दुँधले दिखाई दे रहे हैं | साइड में कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं |

केवल होटल लिखा हुआ है वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट है ये ।

सामने कई बिल्डिंगस दिखाई दे रही हैं जिनके बहुत सारे ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत लम्बी बिल्डिंगस है ।